रोड पे चल रही है और पीछे बिल्डिंगे है और सिसी की पेड़ वगैरा है हरे हरे पेड है।

ये एक रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन का नाम तो जैसे--

छोटे से बड़े लोग खड़े हैं एक के पीछे एक।